यहाँ पे - यहाँ पे बहुत सुंदर लाइट भी लगी हुई हैं और यहाँ पे फुव्वारा भी लगा हुआ हैं और यहाँ पे गमले भी रखे हुए हैं।

यह एक घरररर है। यहाँ पे ऊपर एच.डी.एफ.सी का बैंक का बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक पुल है। इसके नीचे नदी नही है बल्कि इसके नीचे जमीन है।

यह एक चंचल टेंट हाउस है।